यहाँ पे एक मूर्ति है जो की दिख रहा है की चरखा चला रहे है पीछे दीवार है उसका कलर --

एक टेबल है जिसमें वाइट कलर की कपड़े बिछाई गयी है रेड कलर की चेयर है नीचे फर्श है।

एक हार्ट शेप में ड्राइंग बनी हुई है।

यहाँ पर एक मशीन है जिस से योगा व्यायम किया जाता है पीछे की दीवार ग्रे कलर की है एक ट्यूबलाइट लगी हुई है फर्श ब्राउन कलर का है।

कुछ वय व्यक्ति वहाँ समान लेने आये है फर्श है ग्रीन कलर की

यहाँ पे एक शॉप है फ्रूट की जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखाये गए है जिसमें केला संतरा अनार रखाए गए है जिसमें पि पिंक कलर की पन्नी का यूज़ किया गया है।